वृक्ष लगे हुए हैं बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है।

माता ट्रस्ट यहां पे बोर्ड है ऊपर डेकोरेशन की गई है और--

अच्छा भीं लग रहा हैं यहां पे।

लाइट लगी हुई है यहां पर डेकोरेशन भी की गई है।

और कुर्सी भी सामने दिख रही है और काफी अच्छा यहां पे--

बहोत ही सुंदर हट बनाई हुई है जिसपे--

ये एक जो रेस्टोरेंट होता है वो ओपनिंग हुआ है।

ये एक दुकान है जिस पे वीर का मिस्क शेक लिखा हुआ है। बहोत सारे लोग यहां पे खड़े हैं। सामने एक बस भी--

दुकान काफी बड़ी है कंफेक्शनरी की दुकान है और सामने एक सरदार जी भी--

और इ_एम_आई टाटा स्काई लिखा हुआ है सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही है बड़े बड़े बक्सों में समान लगा हुआ है।

ये एक बहोत ही सुंदर रेस्टोरेंट हैं जो की बहोत सुंदर टेबल्स के साथ सजाया हुआ हैं।

बहोत ही बड़ी बिल्डिंग सामने बनी हुई है बोर्ड लगे हुए हैं।